यहां पर वरमाला भी रखी गई है जोकि बेचने के ल--

यहां पर आप पीछे खुला आसमान देख सकते हैं।

जो कि नीले रंग के बादलों से घीरा हुआ है इसके सामने एक पीले रंग की बिल्डिंग दिखाई दे--

पुल के ऊपर कोई भी नहीं चल रहा पुल के नीचे तीन चार आदमी--

यहां पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई--